नीसाण हम तें तीन नौनी जाण दिखेण लीं भ्वां मा जी हम ते पक्की रोड दिखेणी कॉलेज का भीतर हम तें भीमल का डाला दिखेण लग्यां एक पीलू रंग कु कुड़ु दिखेणु।

ये चित्र पर हम तें लुखारी छतन दिखेण लगीं जे मा जी सब की छत हम तें नीला रंगा की दिखेणी एंच हम तें डाला बुर्तान दिखेण लग्यां।

सामणी पर हम तें कुर लाल रंग की कुर्सी पर दुई तीन औरतन बैठी दिखेणी एक मंडस्यारू दिखेण लग्युं जूं का बगल हम तें काला रंगो को बड़ु टेलीफोन दिखेण लग्युं।